शेर की मूर्ति बनी है दोनों दीवार पे।

ऊपर शीए शीशे की खिड़कियां लगी हैं।

जमीन पे हरी हरी घास निकली है।

चर्च के बाहर एक औरत खड़ी है साड़ी पहेनकर।

एक बड़ा सा बैनर लगा है ब्लैक कलर का।

इसमें तीन लड़कियां दिखाई दे रही है।

एक आदमी पत्थल पे बैठा है।

बहुत सारे बैनर लगे हैं।

एक रेड कलर का घर दिखाई दे रहा--

और एक आदमी बैठा है सोफे कुर्सी पे।

जहां ब्लैक कलर का एक बैनर लगा है।

दो पेड़ दिखाई दे रहे--

लाल येलो कलर के ऊपर मैट लगे हैं।

और यहां पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

जहां एक गोला बना हुआ है उसमें छोटे छोटे पौधे निकले हैं।

और छोटे बड़े पत्थर हैं।

एट रेलिंग लगी हुई है लोहे की।

एक खंभे पे पेंट हुआ है।

और छोटे छोटे पेड़ दिखाइ दे रहे --

और एक दुकान पे लिखा सुधा पार्लर ।

तीन पहिए वाला रिक्शा है। इसपे एक आदमी बैठा है।

और बॉक्स वाली अलमारी बनी है।

नीचे बॉक्स वाली अलमारी बनी है।

ये एक लिफ्ट वाली सीढ़ी है।